यह क्रिश्चियन धर्म का गॉड का स्थान है | यहां पर अपनी मनोकामना को पूर्ति करने हेतु तथा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं | और यहां पर उन्हें शांति मिलती है|

यह प्राचीन काल का लाल किला है जो दिल्ली में स्थित है।

यह अधिकांश बौद्ध धर्म के लोगों का बुद्ध भगवान जी है इनकी उपस्थिति में शादियाँ भी करवाई जाती हैं और यहाँ पर भी शांति हेतु आते हैं और यहाँ पर भी मनोकामना पूर्ण करने हेतु आते हैं ।

जिसे हम अप वहाँ जाकर अपने मन की मनोकामना को पूर्ण करते है और वहाँ पर हमें शान्ति मिलती है।

यह एक एटीएम है यह यह बैंक का दूसरा रूप है ।